सड़क पर बहुत गाड़ी खड़ा है।

एक आदमी बाइक से जा रहा है एक ऑटो दिख रहा है ऑटो का --

एक शीशे का ईमारत दिख रहा है जिसका रंग नीला दिख रहा है।

जो दो टैम्पू दिख रहा है एक चार पहिया वाहन दिख रहा है जिसका रंग सफ़ेद दिख रहा है आसमान काला दिख रहा है।

घास हरा भरा दिख रहा है चारों ओर रास्ता बना हुआ है एक कुर्सी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक रास्ता दिख रहा है रास्ता सीधे जा रहा है।

पेड़ पर सफेद पेंट किया हुआ है कुछ पेड़ छोटा दिख रहा है।

मैदान में दो आदमी दिख रहा है एक आदमी सफेद कपड़ा पहना है।

सामने शींसा का दीवार दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहुत पुजारी दिख रहे हैं कुछ लड़कियाँ दिख रही हैं कुछ महिलाएं दिख रही हैं।

बहुत सारा सीढ़ी दिख रहा है।

ऊपर करकट दिख रहा है नीचे मिट्टी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक बेड दिख रहा है बेड पे सफेद चादर बिछा है पीछे का दीवार दिख रहा है।

दीवार पर तस्वीर टंगा दिख रहा है।

दीवार पर दो तस्वीर टंगा है।